यह एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे ऊपर बहोत सारी लाइटस लगी हुई हैं। सारी लाइट जल रही है नाईट का टाइम है एक हरे कलर का डस्टबिन दिख रहा है इसमें एक बैठा हुआ आदमी दिख रहा है।

यह एक मार्ट है मार्ट में काफी सारे सामान रखे हुए हैं और यहां पे बास्केट में बहोत सारा सामान रखा हुआ है और बहोत सारी गोनी रखी हुई है आटे की गोनी है।

एक थर्माकोल का डब्बा रखा गया है और एक लड़का मच्छी कट करते हुए दिख रहा है एक आदमी खड़ा है मच्छी लेने--

यह एक रोड है रोड दोनों साइड से जा रहा है बिच में एक डिवाइडर लगा हुआ है जो पिले और काले कलर का डिवाइडर लगा हुआ है।

यहां पर किसी चीज की रैली निकली हुई है रोड में काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा है यहां पर बहुत सारी भीड़ है एक खंभा दिख रहा है खंबे में लाइट लगी हुई दिख रही है और एक खंभा दिख रहा है सबसे पहले वायर यहां से वहां जा रहे हैं।